और उसके सामने जैसे एक ले जेंट्स लड़का भी खड़ा है वो फोटो खीच रहा है।

नीचे टाइल भी बिछ रही है।